सामने घर बना हुआ दिख रहा है जो कि लकड़ी का दिख रहा है पीछे रेक बने हुए हैं जो कि बोहोत ही सुन्दर लग रहे है बहोत ही प्यारे लग रहे नीचे फर्श है वो भी लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ है जो की वाईट कलर का दिख रहा है।

कांच के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है पीछे हमको वार्ड दिख रहा है जिसमे कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ हमको खाली बेड दिख रहे हैं जो की पलंग कहते हैं जिससे ऊपर छत दिख रही है जो शेड लगी हुई दिख रही है और ये लाल अक्षरों में लिखा हुआ --